नीचे बोर्ड पे काठियावाड़ी चाइनीस पंजाबी साउथ इंडियन फास्ट फूड लिखा हुआ है और बैंक्वे में भी लिखा हुआ है।

ये फास्ट फूड के आगे एक सफेद कलर की गाड़ी भी रखी हुई है और राइट साइड में टू व्हीलर जैसे स्कूटी और बाइक भी रखी हुई है और राइट साइड में रोड भी दिख रहा है।

इस फोटो में मेरे को बहुत सारी अह जो गर्ल्स हैं वो भरतनाट्यम के कपड़े पहने हुए बैठी दिख रही हैं।

ये शादी का मंडप जैसा दिख रहा है जहां पे रेड कारपेट बिछी हुई है।

ये एक बस डिपो की फोटो है जहां पे बहोत सारी बस साथ में रखी हुई है।

बस व्हाइट ग्रीन और रेड और व्हाइट कलर की है और उसके सामने लोग अपना सामान लेकर बस में चढ़ रहे हैं।

ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी दिख रही --

जहां पे आगे मेरे को एक आदमी दिख रहा है जिसके आगे दो कंप्यूटर मॉनिटर रखे दिख रहे हैं।

जिसके आगे एक लाल गाड़ी और राइट में एक छोटी लाल गाड़ी दिख रही है लेफ्ट साइड में--

और इसके जो दीवारे है वो सफेद कलर की है।

और ऊपर पंखे लगे हुए हैं पंखे अ ब्लैक कलर के हैं।

और एक आदमी सफेद कलर का कपड़ा पहन के पाइप के साथ पानी से गाड़ी को साफ कर रहा है।

और ये लोग कुछ क्राफ्ट जैसा बना रहे हैं और इनकी टेबल पे फेविकोल अ क्राफ्टिंग पेपर रिबन ये सब पड़ी हुई हैं।

ये लोग ये स्कूल जैसी जगह पे हैं जिसकी दीवार सफेद रेड और पर्पल है।

यहाँ पे मुझे एक दुकान दिख रही है जिसपे राजस्थान स्वीट्स एन नमकीन लिखा हुआ है।

बाईक ब्लॅक कलर की है और उसके पीछे एक इंसान भी खडा हैं।

यहां पर मुझे एक रास्ता दिख रहा है जिसके राइट साइड में एक सफेद कलर की वैन है।

यहां पे मुझे एक वॉटरपार्क दिख रहा है जहां पे लेफ्टसाइड मे बहोत सारी स्लाइड्स है स्लाइड्स ऑरेंज कलर की ब्लैक और व्हाइट कलर की है।

राइट साइड ये घूमने वाली स्लाइड भी है ऊपर मुझे खुला आसमान दिख रहा है।

ये दीवार हरी कलर की छठ हरी कलर की छत है पीछे मेरे को बड़े हरे पेड़ भी दिख रहे--

यहां पे मुझे एक लकड़ी के बेड का फ्रेम दिख रहा है जो ब्राउन कलर का है।

इस साइड में एक गाड़ी है एक स्कूटी है आगे एक पेड़ की छाया पड़ रही है।

इसके आगे मेरे को बहोत सारी बाइक व स्कूटी खड़ी दिख रही है इसके आगे एक ए_सी का आउटलेट भी लगा हुआ है।

और आगे एक रोड भी दिख रहा है और एक औरत भी चलती हुई दिख रही है उसके हाथ में सफेद थैली है।

या पे एक रूम दिख रहा है जिसके बीच में टेबल रखी हुई --

यहां पे सामने एक लेडी बैठी हुई है स्कूटी पे जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।

एक ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी है और सामने में दो बाइक और स्कूटी खड़ी दिख रही है।